ये एच.डी.एफ.सी. बैंक है गेट बना हुआ है सीढ़ी है ।

मौनबत्ती जला के रखे है नीचे उम दरी बिछाया गया है ऊपर से ओढ़ाया गया है एक आदमी शाल ओढ़े हुए है।

ऊपर आसमान दिख रहा है आसमान में बादल चल रहे हैं बीच में एक खम्बा गढ़ा हुआ है ।

चेयर लगा हुआ है बैठने के लिए बहोत सारे लोग बैठे भी है सजावट किया हुआ है देखने में सुन्दर है सभी लोग हाथ में बुक लेकर पढ़ रहे है ।